यह एक ग्राउंड है जिसमें हरी घास लगी हुई है।

जिस पर सफेद और काला कलर हुआ है।

इस चित्र में एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

इसके दीवार पर सफेद कलर हुआ है।

उसकी छत में कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

यहां पर बिजली के कुछ खंभे भी लगे हुए है।

उसके सामने की तरफ दो टेबल रखी हुई है।

और टेबल के ऊपर कुछ केक भी रखे हुए हैं।